सामने पोधा है रखा हुआ है अंदर कि ओर कांच का दरवाज़ा है बहोत सारी लाइटें हैं जो जल रही हैं।

चारों ओर बिल्डिंग हैं छोटे छोटे पौधे भी लगे हुएं हैं।

सामने सब्जी का ठेला लगा हुआ है।

तीन पर्चे लगे हुए है वहां पे तराजू भी है एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं।

आसपास कुछ टावर भी लगे हुए हैं चारों ओर इमारत है और पेड़ भी लगे हुए हैं।